यह एक खेत का नजारा है इसमे ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है नीचे अ खेत खलियान दिखाई दे रहे जो की हरे-भरे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे है दूर- दूर तक हमे कुछ बस्तियां कुछ पेड़ -पौधे दिखाई दे रहे है कुछ बिजली के तार दिखाई दे--

आसपास कुछ पेड़ लगे हुए है कुछ छोटे पेड़ कुछ बड़े पेड़ लगे हुए है नीचे पानी भरा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर नजारा है।

खेत खलिहान दिखाई दे रहा है ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं यह शाम का दृश्य है इसलिए यह हरा से अह एक सूर्य के प्रकाश के कारण यह ऑरेंज रोशनी यहां पर दिखाई दे रही है।

यहां ए इस नजारे को देखकर के हम कह सकते हैं यहां पे एक तालाब है जो कि जिसमे पानी भरा हुआ है ।

यह दृश्य बहुत ही सुंदर मनमोहक और खूबसूरत नजर आ रहा है ऊपर नीला आसमान है जिसमे सफेद कलर के बादल अ एक आकृति लिए हुए है रखे हुए है।

यहां कोई बड़े पेड़ कुछ छोटे पेड़ कुछ बिजली के खंबे भी दिखाई दे रहे हैं कई जगह पे हरी घास भी नज़र आ रही है कई जगह पे सूखा पड़ा हुआ--

इस दृश्य को देख कर हम कह सकते हैं ये पहाड़ के ऊपर से ली गई तस्वीर है यहां पे कुछ बड़े पेड़ लगाए हुए हैं कुछ दूर से पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है नीचे मिट्टी दिखाई दे रही है कुछ पत्थर दिखाई रहे हैं।

इस दृश्य मे हम एक ऍनटरी गेट देख सकते है जो की एक प्ले ग्राउन्ड या फिर एक अ क्रिकेट ग्राउन्ड के अंदर जाते हुए--

इस दृश्य मे हम देख सकते है एक सूखा पेड़ लगा है आस-पास हमे कुछ हरे और बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो की हरे घास का मैदान है और ये बहुत ही सुंदर नजर आ रहा हैं।